आपको दिख रहा होगा घर डबल स्टोरेज का दिख रहा होगा आपलोगों को अलग ही ऊपर खिड़कियाँ बनी हुई हैं एक आदमी पैंट कर रहा आप देख सकते हैं। घर का कलर क्रीम कलर है ब्लू कलर है।

आप लोग देख सकते हैं। एक बच्चे ने ब्लू कलर के कप टी-शर्ट्स पहनी हुई है। यहाँ पे एक पॉलिथीन रखी हुई है ऑरेंज कलर --

बुक की दुकान दिख रहे होंगे अलग-अलग कलर की। बुक्स लगी हुई है। यहाँ पर कुछ बलून्स लगे हुए है। जिनका कलर पिक रेड एण्ड येलो कलर में आपलोग देख सकते है। यहाँ पर बड़ी सी लाइट लगी हुई है कुछ --

देख सकते हैं शॉप की ओपनिंग होते हुए दिखाई दे रही होगी आपको। शॉप का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में व्हाइट कलर से लिखा गया है। रेड एंड व्हाइट का कंबीनेशन है। यहां पर बलूंस लगे हुए हैं। रेड एंड व्हाइट कलर के।

आपलोग देख सकते हैं यहां पर गेंदे के कुछ फ्लावर्स से यहाँ पर डेकोरेशन की गई है। आपलोग गेंदे का कलर देख सकते हैं ऑरेंज कलर है। कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं यहां।

यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक बुक शेल्फ नजर आ रहा होगा| यहाँ पर डिफरेंट -डिफरेंट कलर्स की आपको बुक्स नजर आ रही होगी ब्लैक कलर रेड कलर ग्रीन कलर डार्क ब्राउन कलर लाइट ब्राउन कलर की है ।